और यहां ऐसा इस मौसम को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि यहां बहोत ही ज्यादा कोहरा हो रहा हो या फिर बहोत ही ज्यादा ठंडा मौसम--

रखे हुए हैं और यहाँ एक व्हाइट कलर की चटनी भी दिखाई दे रही है स्पूनस भी दिखाई दे रही है।

और कुछ खंबे दिखाई दे रहे हैं जिसे लाइटस कनेक्ट हो सकती है और उसकी केबल मुझे दिखाई दे रही है यहाँ बहोत सारी केबल्स हमे दिखाई दे रही है और यहाँ बहोत सारी बिल्डिंगस भी हमे दिखाई दे --

यहाँ पर अलग-अलग एक ही स्ट्रेट में सारी लड़कियाँ खड़ी हुई है जोकि हमें दिखाई दे रही है और--